आप देख सकते हैं अउ पेड़-पौधे भी लगे हैं अउ आसमान भी अच्छा किया हैं आप दे--

कपड़ा दुकान है अच्छा वह सोल्ड भी है | और अच्छा भी दिख रहा है पोस्टर भी लगाया है और अंदर भी जायेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा।

ये मंदिर भी हे यहाँ पस फुल पेड़-पौधा भी है अब अच्छा दिख रहा भी है।